इस फोटो मे सफेद रंग की दीवार दिखाई दे रही है ऊपर लाइट लगी हुई है यहां पर--

और यहां पर बेंच रखा हुआ है।

यहां पर जो है पत्थर वगैरह दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर घास है प्लांट्स हैं।

पीछे कुछ घर और भी दिखाई दे रहे हैं।